हमको यहां में पत्थर और बालू भी दिखाई दे रहा है।

यहां में हमको एक पेट्रोल पंप भी दिखाई दे रहा है।

यहां मे हमको किपेड मोबाइल लोग का बॉस भी दिखाई दे रहा --

हमको ये फोटो में घर दिखाई दे रहा है घर का कलर येलो है।

यहां में छोटा छोटा घास पूस भी दिखाई दे रहे हैं।

मुझे फोटो में बहुत बड़ा बिल्डिंग भी दिखाई दे रहा है।

यहां में आधा आदमी लोग ऑरेंज कपड़ा पहन के है।

यहां में हमको बहोत सारा टेबल लोग भी दिखाई दे रहा है।